गमले रखे हुए हैं जिसमें छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

दो टेम्पो खड़े हैं एक बाइक वाड़ा खड़ा हुआ है जिसने हेलमेट लगा रख्या है।

और कुछ आदमी इस इंक्वायरी के में बैठे हुए हैं।